देख सकते हो कि एक ये होत होआएगा एक दुकान है जहां प्लास्टिक की कांच के बर्तन मिलते हेंगे एक गज है।

पीलर अ पेअर है। उसके बाजू में देखोगे की बहोत सारी घरे है। कार आ रही जा रही है।

वहां सामने एक एक्टिवा खड़ी हुई है और बाजू में एक नीले कलर का गेट है देखो कि आजू बाजू देखो कि--

की ट्रीटमेंट फुव्वारा बहोत सारे सामान मिलता है टंकिया मिलती है पेंट मिलता है।

देखो की मंगलसूत्र लगे हुए है क्लिप रखे हुई है बहोत सारे क्लिप है देखोगे कि इयररिंग रखी हुई है और पंद्रह पंद्रह रुपए के मात्र दे रहे है।

मनगल सूत्र है। हेयरबेल्ट है। बालि है कान की बाली।

प्राइवेट टाइगर बहुत सा फॉरेस्ट ये टाइगर फॉरेस्ट है आजू बाजू में देखो कि एक--

स्टाफ के लोग हैं एक बाइक खड़ी हुई हैं आजू बाजू भी एक और बाइक खड़ी हुई है स्कूटी है।

जहां देखो की बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पेड़ लटक रहे हैं गीर रहे हैं नदी के अंदर झील के अंदर बहोत प्यार भी लग रहा --

हवाई जहाज आसमान खुला हुआ है नीचे देखोगे कि पूरे घास ही घास लगा हुआ है मेंन रोड है ये।

जा ये ट्रक है उसके ऊपर एक गो बा सामने खंभे खंभे लगे हुए है पेट्रोल पंप पंप के --

देख सकते हो कि ये एक कैफे है कैफे के अंदर जाके देखोगे की कुर्सियां टंगी लगी हुई है।

देख सकते हो कि एक दुकान है जो पा की है जो हेयर कट की।

जो की बैनर लगा हुआ है बहोत अच्छा खासा गाड़ियां है ये खूबसूरत गाड़ियां--